दोनों ने बहोत अच्छे कपड़े पहने हैं एक ब्लू कलर का घाघर चोली और--

आसपास बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स है और चेयर्स लगे हुए है।

ये एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज जैसी दिखाई दे रही है।

छोटा सा और ऊपर नीले रंग का वो--

ये एक झरने की फोटो है जिसमें से पानी नीचे जा रहा है।

जहां पर बहोत सारे डायमंड्स के और अदर गोल्ड और सिल्वर के ज्वैलरी रखे हैं।

जो शोकेस में रखे हुए है बहोत सुंदर तरह से इस--

ये भारतीय स्टेट बैंक के बाहर की फोटो है।

बहोत सुंदर ऑरेंज कलर का फूल खिला हुआ है उसके पीछे बहोत सारी झाड़ी--

और यहाँ पर और एक कोकोकोला का फ्रिज रखा हुआ है वैसे ही काउंटर है टेबल है ऑरेंज कलर के यहाँ पर चेयर्स है।

योगामैट बीचे हुए हैं बहुत सारे लोग हैं ट्रेनर घुम घुमकर उन्हें सिखा रहे हैं।

और पोल दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी बड़े बड़े पेड़--

ये बहोत बड़े चट्टान की फोटो है जहाँ पर बहोत बड़े-बड़े पत्थर है।

और एक यहां पर जनरेटर दिखाई दे रहा--

जिसपे वोल्टी आंटी का पेंटिंग है आस पास नीचे बहोत सारी गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है।

ऊपर शेड की गई है शीट से।

और ये तीन पेड़ यहां पर रंगे दिखाई दे रहे--

जिसमें एक जोमैटो है इसके ऊपर और कुछ सामान है आसपास बहुत सारे बिल्डिंग है जो बहुत ऊंची है।

एक रोड में कार चल रही है जो रेड कलर की है।

और सामने और भी बहोत सी कार रखी हुई है।

आसमान साफ है बहोत सारा पानी यहां पर भरा हुआ है।

और ग्रीन कलर के चेयर्स है।